बहुत सारी मिठाई रखी है और--

कप केक लड्डू पेड़े नमकीन--

एक वन साइड दरवाजा दिखाई दे रहा है.

इस तस्वीर में एक डेकोरेट अम्-सजा हुआ रूम दिखाईं दे रहा है.

और तीन मेट दिखाई दे रहे हैं.

इस तस्वीर मे दो विंडो है.

साइड में इसके लेफ्ट और राइट साइड में कोलम रखे हुए हैं.

तीन आदमी खड़े हुए हैं एक आदमी कार के पास खड़ा है और कुछ मसाले की चद्दरे हैं.

और एक दरवाजा है एक साइड में पंचिंग बैग भी है.

इस तस्वीर में एक रोड और फुटपाथ दिखाई दे रहा है. फुट--

एक ट्रक दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी बोरियां लदी हुई हैं।

इस तस्वीर में एक स्कूटी दिखाई दे रहा है स्कूटी का कलर सफेद है।

होटल के ऊपर केरेला होटल बोर्ड लिखा हे.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

मशीन के पास तीन पेड़ खड़ा दिखाई दे रहा है.

दो खिड़किया दिखाई दे रहा हे.

एक सिसकोन का बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में दो आदमी दिखाई दे रहा है.

तस्वीर में दो भगोना दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे एक विग की दूकान दिखाई दे रही हे.

एक यूनियन बैंक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है.

एक घर सफेद घर दिखाई दे रहा है.

उनका कलर सफेद लाल नीला है यहां एक स्कूटी खड़ा है।